इस चित्र मैं सूंदर सा बदल दिखाई दे रहा है |और एक झण्डा बी दिखाई दे रहा हे चार मीनार दिखाई दे रहे हे फूल दिखाई दे रहा हे और इस चित्र में छोटी सी फौड़े बी दिखाई दे रहे हे |

और बाहर कॉलेज के बाहर एक वॉचमैन भी खड़ा हुआ हैं गाड़ी खड़ा करी हैं और बड़े - बड़े झाड़ा भी दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा हैं देखने को कॉलेज बहुत बड़ी --

चित्र में एक कटिंग शॉप दिखाई दे रहा है और दो कुर्सियां दिखाई दे रही है तीन चार आइना का दिखाई दे रही है देखनि को बार्बर शॉप बोहोत सारा खूबसूरत लग रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है और पार्क में सुखी घास कच्ची घास भी दिखाई दे रही है और शो के फ्लावर्स पत्ते भी दिखाई दे रही है दूर से फ्लावर्स दिखाई दे रही है नजदीक में शो के पत्ते दिखाई दे रहे है ]

और अ दिखने को बड़े मुर्गियाँ बहोत सारी खूबसूरत लग रहे है उनके पैर बड़े-बड़े है।

इस चित्र में एक आई_सी_आई बैंक दिखाई दे रहे है और आधा शेड हुआ है और आई_सी_आई बैंक दिखाई दे रही है एक रेड कलर का बोटल दिखाई दे रही है|